इस तस्वीर में एक ब्लैक कलर की गाड़ी दिख रही है उसका टायर भी दिख रहा है।

ये एक रोड़ की तस्वीर है जिसके इर्द गिर्द बहुत सारे दरख़्त--

दा दो गाड़ियों को ऊपर शीट से ढका हुआ देखा जा सकता है।

जो की बहोत सारी सीढ़ियां हैं इन सीढ़ियों पे दो आदमियों को देखा जा सकता है।

इसके गाड़ी के इर्द गिर्द बहोत सारा मिस्त्री का सामान बिखरा पड़ा है।

इनके पीछे बहोत सारे योगा के मेट्स भी दिख रहे हैं।

ये एक पेट्रोल पंप ली हुई तस्वीर है जिसमें शाम का वक्त देखा जा सकता है।

उसकी खिड़कियों और दरवाजों का ब्लू कलर किया गया है।

इसमें बहुत सारे और छोटे पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे हैं इसमें एवरग्रीनस भी दिख रहा है।

पीछे एक शेल्फ भी दिख रहा है जिसपे कुछ ट्रॉफियां लगीं हुई है।

इस मस्जिद के अह सामने आंगन में बोहोत सारे लोगों को देखा जा सकता हैं।

अ येलो कलर के गमले हैं एक व्हाइट कलर का है और एक ग्रीन कलर का है।